इस दुकान में एक आदमी खड़ा है और इसके पीछे बहोत सारी--

है और इस रूम में एक अह ईसा मसीह की फोटो लगी हुई है जो कि प्लस का चिन्ह में ईसा मसीह को लगाया गया है।

खड़े हैं और बहोत सारे लोग नीचे खड़े हैं।

और उसके बगल में छोटे छोटे बहोत सारे लड़के खड़े है और बोड़े में प्लास्टिक के बोड़े मे अ कुछ--